बहुत सारा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

घर का बाहर बहुत ज्यादा आदमी भी दिख रहा है।

अंदर में कारपेट भी बिछाया हुआ है।

इसका कलर हला हरा और लाल है अंदर में आदमी भी खड़ा है।

पीछे मैं बहुत बड़ा ब्रिज भी बनाया हुआ है।

यह फोटो में मुझे एक कमरा दिखाई दे रहा है।

दुकान को बंबू और टीना से लगाया हुआ है।

इंसान का शकल ब्लर किया हुआ है।

यहां में बहुत सारा टेन लगाया हुआ है।

कमरा में चेयर भी रखा हुआ है।

घर का छत पत्ता से बनाया हुआ है।

बिल्डिंग के अंदर बहोत सारा लाइट्स लगाया हुआ है।

दुकान के आगे आदमी भी खड़ा हुआ है।

फ्लावर पॉट भी रखा हुआ है।

बहुत सारा मछली रखा हुआ है।

फोटो में मुझे बहोत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।